बड़ा सा हॉल या एक बड़ा सा बिल्डिंग उसके ठीक बाहर खड़ी कुछ कारें है जो की पार्किंग स्थल में है एक बोलेरो कुछ छोटी-छोटी कारें यहाँ पे खड़ी है दूर इसके ठीक ऊपर बहोत सारे बिजली के पोल है एक पेड़ सूखा हुआ है।

एक सब्जी की दुकान जहां पे महिलाएं कुछ सब साग सब्जी की खरीदारी करती हुई दुकानदार अपने ग्राहकों से मोल भाव करता करता हुआ साथ मे ये दो चार तरह के तरह-तरह के सब्जियां आलू बैगन पालक। यहां पे सजा करके सवार करके अच्छी तरीके से ट्रे में रखा गया है।

गैरेज में खड़ी है एक बोलोरो गाड़ी जो जिसका नंबर बीआर टू नाइन पीए फोर जीरो वन जीरो है। यहाॅं पे इसके अंदर न तो कोई चालक है न तो कोई सवार है।

इसके साथ में ठीक बगल में एक निर्माणाधीन मकान है जिसपे की प्लास्टर वगैरा नहीं हुआ है।

इधर से उधर गुजर रहा है कुछ व्यक्ति मोटर साइकिल पे अपने चाहने वाले का इंतजार कर रहे हैं।

ये साथ में कुछ एक बड़ा सा बीच मैदान में एक नेट भी लगा हुआ है साथ में कुछ बच्चे किनारे पे बैठ कर के गप्पे भी हांक रहे हैं।

स्कूल के मैदान का एक दृश्य जहां पे क्रिकेट शुरू होने के पहले का सीन ऐसा प्रतीत हो रहा है।